और बहुत होनहार विद्यार्थी ये लोग लग रहे है सब अपने-अपने कामों में व्यस्त है मैम पहले मेरा प्रोजेक्ट देखिये पहले मेरा प्रोजेक्ट देखिये।

ये झुलुआ पार्किंग है बहोत अच्छा लग रहा है यहां पर बच्चों के लिए फैमिली लोग के लिए और बहोत ही हवादार गार्डन भी लग रहा है यहाँ पे पेड़ पौधा भी है।

नया बिल्डिंग बन रहा है लगता है गांव में और लेबर लोग भी काम बहुत अच्छा से कर रहा है पुरा मिलकर कर रहा है और ध्यान दिया जा रहा है कि कोई समान छूटे नहीं और इसमें एक दो इसमें लगता है कि सात आठ आदमी लगे हुए हैं काम में और सामने पेड़ पौधा है।

साड़ी का दुकान है जिसका नाम राजलक्ष्मी है और यह साड़ी शोरूम है आप यहां से शोरूम साड़ी है यहां पे सब कुछ मिलेगा आपको।

गार्डन अच्छा लग रहा है किसी का छत का गार्डन लग रहा है ये और पेड़-पौधा पर्यावरण को इंसान बचाएंगे तभी स्वस्थ रहेंग --